लाइट सजाया हुआ है अंदर बहुत दूर तक भी लाइट सजाया हुआ है.

कोई चीज का फेनशन है लग रहा है जैसे।

एक रोड़ है रोड पे साइड बैकग्राउंड हे एक बाइक खड़ा हुआ है जो दिख रहा है शिसा हल्का भी दिख रहा है.

कोई फोटो खिंचवा रहे हैं बहुत सारा सामान है.

एक रोड हे रोड के साइड मे एक बिल्डिंग हे कैंटीन का बोर्ड लगा हुआ हे.

यहां पर लाइट मारा हुआ है एक बोर्ड भी है टंगा हुआ है।

हिंदी बार में बाइक वगैरह भी है.

कुछ नहीं दिख रहा है शटर दुकान सब बंद है.

एक पेट्रोल टंकी हे एक जन तेल भरवा रहा हे.

अब ये लोग देख रहा है की सोच रहा है की क्या करे घर बनाए की ना बनाए.

पौधा भी लगा हुआ है.

एक रोड है रोड में इस्कूटी में यह आदमी लोग जा रहा है एक भी खड़ा है.

फोर व्हीलर भी खड़ा है.

एक छोटासा गमला मे छोटासा प्लास्टिक का फूल हे.

गोल्ड कलर का मूर्ति है.

तीन चार बैठा हुआ हे.

एक सत्तू का मिल जैसा लग रहा हे.

एक नीचे में बाल्टी है नी एक साइड में बोरी है ऊपर से एक आदमी डाल रहा है.